व एक यहां पे स्कूल है जो सफेद रंग का है।

यह एक परचून की दुकान है यहां पे मैगी बहुत सारे चिप्स पान पुड़िया भी रखा हुआ है।

यहां पे एक पेड़ भी लगा हुआ है जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।

यह एक कैंटीन है यहां पे बहुत सारी लाइटें जलती दिखाई दे रही है।

यहां पे एक छोटी सी नदी है जिसमें पानी भरा हुआ है।

इसके पड़ोस में एक गार्डन है जहां पे बहोत सारी हरियाली है और बहोत फूल लगे हुए हैं।

इसके आस पड़ोस के पर्दे पड़े हुए हैं जो गुलाबी और नीले रंग के हैं।

यह नरसिंह विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है जो ललितपुर में है।

इसके अंदर बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई है और बहौत सारे दरवाजे--

यहां पे बहोत सारी काले रंग की मूर्तियां भी है।

यहां पे एक पीले रंग का कमरा भी बना हुआ है।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

यहां पे एक आदमी के हाथ में लोटा दिख रहा है।

यहां पे श शटर जो काले रंग से पुता हुआ है।

इसमें बहोत सारी लाइटे भी जल रही है दिखाई दे रही हैं।